व्यक्ति है और अच्छे अच्छे घर है यहाँ ।

यहाँ पर तीन व्यक्ति हाथ से हाथ मिलाए हुए है यहाँ और शायद अपने पिक्चर ले रहे है बहोत बड़े ऑफिस लग रहा है बहुत कुछ सामान वगेरा है बैग वगेरा --

एक जिम है बॉडी बनाने का हम मुझे भी लगा कि मैं भी यहाँ मैं बॉडी बनाने जाऊँगा यहाँ एक यंग मैन बोहोत सच अच्छा है सुपर दी सुपर बॉडी है इसका --

यहाँ बहोत बड़ी-बड़ी मछली है बहोत सारी लाइट है और एक व्यक्ति बहोत सारे व्यक्ति है मछली यहाँ बेच रहे है और बहोत अच्छी-अच्छी बहोत बड़ी-बड़ी मछलियाँ है।

व्यक्ति एक व्यक्ति यहाँ मछली बेच रहा है।

बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा कार्ल्या नगर है शानदार है यहाँ का --

यहाँ पांच छः सात आठ लोगो यहाँ रोड बना रहे--